इसमे लिखा हुआ है स्टॉप जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक लड़के खड़े हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां एक चबूतरा बना हुआ है जैसा कि मैं देख पा रही हूं इधर साइड में एक घर है जिसमें पाइप --

पाइप लगा हुआ है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इसमें आकाश का रंग सादा रंग का है।

अलग अलग फोन रखे हुए हैं जैसा की मैं देख पा रही हूँ इस दुकान मे आईफोन इंफीनिक्स विव्हओ सब रखे हुए हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इड इस रोड में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने में एक औरत खड़ी है जो लाल रंग के कपड़े पहने हुई हैं--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक दुकान है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस दुकान का नाम जया इंडियन सैलून मेकअप स्टूडियो नाम है जैसे कि मैं देख--

जैसे कि मैं देख पा रही हु यहां पर ये बहोत सुंदर से पर्दे लगे हुए है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस सैलून के दीवाल का रंग सफेद रंग का है।

टाइल्स बैठे हुए हैं जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक लड़के जा रहे हैं जिन्होनें नीला रंग का --

कवर किया गया है बहुत अच्छे से जैसा की मैं देख पा रही हूँ इस रूम में बहुत सुंदर सुंदर लाइट लगे हुए --

जैसे कि मैं देख पा रही यह सुबह का समय है जैसे कि मैं देख पा रही ह यह एक महाविद्यालय है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर सनातक खंड लिखा हुआ है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ --

इस घर के बगल में छोटी सी एक अ खंडहर है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस घर में बहुत सारे टॉप में पौधे --

पथर रंग का शर्ट पहन हुआ है जैसा की मैं देख पा रही हूँ इस दुकान मे तरह तरह की चीजें है जैसा की मैं देख पा रही हूँ इस दुकान के बगल में एक --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह मार्केट में लाइट लगी हुई है।

इस मिठाई की दुकान में एक कांच के शीशे लगे हुए हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस मिठाई दुकान के बगल में एक कत्था रंग का --

इस दुकान में चिकन को पकाया जा रहा है जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस दुकान के बगल में एक बाइक लगी हुई है जैसा कि मैं देख--

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर चिकन को बड़ी अच्छी तरह से पकाया जा रहा है जैसा की मैं देख पा रही हूँ इसमें चिकन --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां एक मस्जिद है जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे लोग बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूँ।

इस मस्जिद में बहोत सारे लंबे लंबे पंखे लगे हुए हैं।

बहुत सारी बाइक लगी हुई है जैसा की मैं देख प रही हूँ इस एक बाइक के ऊपर एक आदमी बैठे हुए हैं।

इस्काई रंग का है रेड रंग का है पर्पल रंग का है ब्लू रंग का है ऑरेंज रंग का है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस दुकान में --

बहुत सारे बेग भी रखे हुए हैं जैसा की मैं देख प रही हूँ बेगो का रंग भी तरह तरह का है जैसा की मैं --

जैसा की मै देख पा रही हुँ ये बहोत ही खुबसूरत सा लग रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं बिल्डिक का रंग भी नीला रंग का है जैसे कि मैं देख पा रही इस बिल्डिंग के खिरकी का रंग काच रंग का है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस बिल्डिंग के सामने एक बड़ी सी कार लगी हुई है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस बिल्डिंग के बगल में --

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यह एक कमरा है जैसे कि मैं देख पा रही है यह एक ऑफिस का कमरा है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक लोग इनको बिजनेस के बारे में समझा रहे हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक कम्प्यूटर रखा हुआ है जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे कॉपी --

तरह तरह के लकड़ी से डिजाइन बनाए गए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह सुबह का समय है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां एक नदी बहे जा रही हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही यह सुबह का समय है जैसे कि मैं देख पा रही यहां पर एक छोटी सी दुकान बनी हुई हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस किताब की दुकान के बाहर में एक लोग खड़े है जो किताब खरीद रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूं--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक कपड़े का दुकान है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर तरह तरह के शेरवानी रखी हुई है जैसे की मैं देख पा रही हूं इस कपड़े के--

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर शेरवानी का रंग बहुत सुंदर सुंदर है सफेद औ --

यहाँ से एक नदी बह रही है जैसा की मैं देख पा रही हूँ इस पहाड़ के बगल में हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।